कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है जिसमें बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं।

वह दुकान एक ड्राई क्लीन का है उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है।

कुछ ट्रांसफार्मर नजर आ रहे हैं जिन पर लिखा हुआ है--

के व्ही ए मेन ट्रांसफार्मर नंबर वन --

और एक बड़ा प्लेन उड़ने जा रहा है।

मुझे इस चित्र में एक ऑफिस नजर आ रहा है।